यह एक सुंदर सा व्यू नजर आ रहा हैं।

यहां पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके चारों ओर--

यहां एक पानी की तालाब नजर आ रही है घास और पेड़ नजर आ रहे हैं।

और उम्म पिक्चर बेहतरीन बाइक नजर आ रही है।

झरने में बह रहा है और चारों ओर झाड़ियां दिखाई दे रही है।

और बिजली के तारे नजर आ रही है।

बिल्डिंग सी नजर आ रही है और सामने एक ग्राउंड नजर आ रहा है।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

जहां पर सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक मंजर दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत से लोग--

यह एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही हैं।

यह एक बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।